पेड़ है और पहाड़ में बहुत सारा जानवर है बहुत ही अच्छा पहाड़ है।

इस होटल में बहुत सारे लोग आते हैं डिनर करने के लिए ।

यह एक कृष्ण जी का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर।

इस मन दिर में बहुत सारा मूर्तियां हैं।

यहाँ बहुत सारा बस खड़ा है।

बहुत ही अच्छा से लाइट लगाया गया है। बहुत सारे लोग आए हैं।

यह एक खेत है । इस खेत में गेहूं लगाया गया है ।